और बात करते दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में देखिएगा पार्क दिखाई दे रहा है बीच में रास्ता है जिस पर एक व्यक्ति चलता दिखाई दे रहा है।

ये मैदान दिखाई दे रहा है काफी बड़ा और यहां पर देखिएगा बिल्डिंग की परछाई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में देखिएगा इस इमेज में देखिएगा ये एक मेला दिखाई दे रहा है जहां पर तीन बड़े बड़े झूले है।

इस इमेज में देखिएगा फ्रेंड एक काफी बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है राजा महाराजाओं के महल की तरह --

इस पिक्चर में इस इमेज में सामने देखिएगा दो लोग बैठे हुए हैं सीढ़ियों पर।

इस इमेज मे देखियेगा एक जिम दिखाई दे रहा है काफी बड़ा जिम है ये और यहां पर काफी सारी मशीनें है।